ये छत को सफ़ेद रंग से रंगीन कर रहे है ताकि इसमें कोई जाली-वाली न बैठ जाए और इसलिए यहाँ पर एक डिब्बा में सब रख कर उसको पेंटिंग का काम चला रहे हैं लोग ।

और बहुत ही सुन्दर सा यहाँ पर जिसका रोड का रचना किया गया है । बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर देखिए दे रहा है । देख सकते हैं बहुत ही --

और इस में अपना फोटो खिचवा रहे हैं इसका जो दृश्य बढ़िया दिखाई दे रहा है और इसमें --

''यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है खाना खजाना उसको मैंने पढ़ा यहाँ पे रेड कलर का लगा दिया गया है और इतने अच्छे गुलाब गेंदा फूल ''''जो होता है उन्हह का माला बना कर यहाँ पर टांग दिया गया है ।''